और सीढ़ियों के बीच में लाइन दिए हुए हैं।

यहां पे एक व्यक्ति एक बड़ा सा मैट लेके खड़ा नजर आ रहा--

इसके बगल में एक व्यक्ति का बैठा हुआ हाथ भी नजर आ रहा है।

सामने में एक पेड़ का पत्ता भी नजर आ रहा है।

गुब्बारे का कलर पीले और लाल में है रिबन भी पिंक और और येलो कलर में है।

यहां पे बहुत सारे केचप और फ्रूट के डब्बे रखे हुए हैं।

यहां पे हरे हरे घास भी नजर आ रहे--

टेबल के ऊपर कांच और गुलदस्ते रखे हुए हैं।

यहां पे एक बड़ी सी पोस्टर लगी हुई है जिसपे माजा लिखा हुआ है।

इसके बगल में एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी है।

बिल्डिंग पे क्रीम कलर के पेंट किए गए हैं।

इसके बगल में बहुत सारी बिल्डिंगे भी नजर आ रही है।